देखिए की स्टेज बना हुआ है वहां पर एक चान बना हुआ है और लाइट वगैरा गुलदस्ते वगैरा रखे हुए हैं।

देखिए इस होटल में टेबल और चेयर दिख रही है फैन लाइट लगा हुआ है।

देखिए एक आदमी मोबाइल लिए खड़ा है उसके पीछे भी एक आदमी खड़ा है।

नल्ली वगैरह भी दिख रही है और भी कई दूसरे सामान नजर आ रहे हैं।

देखिए यहां पर बहुत ढेर सारी मशीनें रखी हुई है।

फूलों से गुलदस्तों से सजाया हुआ स्टेज पर सोफा रखा हुआ है चेयर है।

देखिए ये कपड़े की दुकान है दो रखा हुआ है।

एक लेडीज पुतला है उस पुतले में सलवार फराक पहनाया गया है।

देखिए यहां पर पलास्टिक की झोपड़ी बनी हुई है दो तीन बड़े से छाते लगे हुए हैं एक लड़का--

देखिए ये किसी चीज का ऑफिस बना हुआ है आधे आधे पर कांच है।

देखिए इस घर में सायद सादि है मंडप वगैरह लगे हैं फूलों से गुलदस्तों से--

रास्ता सजाया गया है दो आदमी अंदर जा रहे हैं।

देखिए इस रोड पर एक रिक्शा खड़ा है।

देखिए यहां पर बहुत सारी चेयर वगैरह रखी हुई है।

देखिए यहां पर बीच में जाली का बना हुआ है एक आदमी उस तरफ खड़ा है साइड में--

देखिए यहां पर बहुत सारी बुक वगैरह दिख रही है एक लड़का खड़ा हुआ है लाइट जल रही है।

और यहां पर पांच सफेद बाल्डिया ढकी हुई रखी है गाड़ी के पीछे थैले वगैरह दिख रहे हैं।

देखिए यहां पर बॉडी बनाई जाती है एक आदमी बैठा हुआ है कुछ पकड़े--

तीन औरतें मूर्ति के आगे झुकी हुई हैं।

एक गेट दिख रहा है गेट के बाहर बहुत सारी हीरो होंडा खड़ी है।

देखिए सामने एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग के बाजू में दुकार खुली हुई है बिल्डिंग के सामने.--

देखिए ये बड़ी सी सफेद मसीन रखी हुई है।

देखिए यहां पर टीन का बना हुआ है इसके अंदर एक बड़ी सी मसीन रखी हुई है इसमें--

देखिए ये बहुत ही खूबसूरत होटल जैसा बना है एक--

खड़ा है ट्रैक्टर के बड़े बड़े चक्के वगैरह नजर आ रहे हैं सामने पेड़ वगैरह दिख रहे हैं।

और बहुत सारे लोग बैठे हैं इधर उधर खड़े हुए दिख रहे हैं।